यह एक स्पोर्ट का दुकान है। यहाँ पे स्पोर्ट्स लोग शूज़ बैट --

यह एक एक्सीडेंट कार है जो खड़ा है एक गटर जगह पर।

और यहाँ पे दो लड़के कंचे खेल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है।

यहाँ पे कई सारे कुर्सियां रखी हुई है जिनमे लोग आराम कर सकते हैं।

और अच्छे भी लगते हैं।

यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हू है। सभी --